डॉक्टर राकेश कुमार का है फिजियो थेरेपी सेंटर है।

पहाड़ का दृश्य दिखाई दे रहा है जिसमें पहाड़ ऊपर नीचे होते हुए लंबी दूरी तक जा रही है इसके अलावा पहाड़ पर--

देखने पर पता चल रहा है कि फिटनेस जिम का --